इस कैफे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस कैफे में --

इस मरीज के पैर मे लगी हुई है।

हमें मकान में ईंटे दिखाई दे रही है।

इस बागीचे में ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर गाड़ियां की धुलाई करी जाती है।

यह एक मंदिर बना हुआ है।

इन पौधों में दवाई दे रहे हैं।

इस छात्रावास का नाम--

यह दीवार मंदिर में जा रही है।

इस कंपीटिशन में बच्चे भाग लिए हैं।

श्रद्धालुओं से भरा हुआ है।